से बनाना पाइनएप्पल ऑरेंज पपाया --

उसके पास एक कनेर के फूल का झाड़ है जिसमें कि मुझे येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर दिख रहे हैं।

आदमी दिखाई दे रहा है जोकि वाइट शर्ट पहना हुआ है। यह कारखाना टीन सेट का दिख रहा है ऊपर से।